तलब में तरह-तरह की पक्षियाँ रहते हैं और इस तालाब में बहुत सारी मछली हैं और यह तालाब बोहोत ही बड़ा है ।

और निक मनाने के लिए भी बहोत आदमी जाते हैं यहाँ पे बहोत ठंडी हवा चलती है नदी के किन --

ऊपर मार्किट है । जहां पे बोहोत प्रकार के सामान मिलते हैं। यहा पे बोहोत सारे आदमी समान खरीदने के लिए जाते यहाँ पे । बोहोत अच्छी क्वालिटी के सामान मिलते हैं। इसलिए बोहोत आदमी जा --